और इनके पास पेड़ पेड़ भी लगे हुए हैं और यहां भी रखी हुई--

और इनके बाहर बहोत सारे व्यक्ति भी खड़े हुए है।

इस चित्र में एक तालाब है जिसमर पानी है।

और कार के दोनों टायर भी खुले हुए हैं।

और सड़क पर एक कुत्ता भी टहल रहा है।

और यहां से एक बाउंड्री भी है जिस पर कुछ रेलिंग भी लगी हुई है।

और गुब्बारे भी लगे हुए हैं और बच्चों का बहुत सारा सामान है।

और इस पर कुछ टेबल भी है और कुछ कुर्सियां भी है और उनके पीछे पेंटिंग भी लगी हुई हैं कुर्सियों की--

और इन पर अलग अलग की कुर्सी रखी है।

और यहाँ पर शीशे लगे हुए हैं और कुछ पर्दे और कुछ लाइटा भी लगी हुई है।

और बाहर शीशे लगे हुए हैं और एल_ई_डी लाइट भी लगी हुई है।

और इनके पास में एक पेड़ भी लगा हुआ है।

और ईनके एकदम ठीक एक छोटी सी दुकान भी है।

और मंदिर के बाहर कुर्सी भी पड़ी हुई है और इन पर कुछ व्यक्ति भी बैठे हुए हैं।

पीछे की तरफ में एक छोटा सा घर है।

और ई कमरे के बाहर एक टीन भी पड़ी हुई है।